और इधर बहुत सारी लाइट्स भी लगे हुए हैं।

और पीछे कुछ फ्रेम भी लगाया गया है।

और इधर बहोत सारे लाइट्स और फैंस लगे हुए हैं।

जाल कंपनी के नल है।

इधर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

इसका नाम याशीन डेंटल --

और इधर तीन लोग मछुआरे हैं।

मच्छीयाँ है और एक बकेट में नहीं है।

और इधर एक मैम भी बैठी हुई है।

और इधर बहुत सारे पाइप है।

इधर कुछ मशीन भी है।

एक डिब्बे का दुकान भी है।